और पुराना किला भी दिखाई दे रहा है।

ये एक बहुत सुंदर झील है।

और इसके चारों तरफ बहुत अच्छी फसल दिखाई दे रही है।

कि अनजान आदमी अंदर नहीं घुस सके।

हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह एक बढ़िया वाला मकान दिख रहा है।

ये एक मार्केट दिखाई दे रही है।